ये किसी शॉप का फोटो है शॉप का मार्बल --

ये किसी सब्जी मंडी का फोटो है जहाँ पे बंधागोबी फूल गोबी टमाटर गाजर शिमला मिर्श --

ये किसी मार्ट का फोटो है मार्ट का कलर वाइट है नीचे का फ़र्श भी वाइट है।

एक आदमी बाहर नाव के किनारे पत्थर पर बैठा हुआ है।